यहाँ बच्चे देखने भी जाते हैं इस चीज को।

ये स्कूल है कॉलेज है। यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं।

शिक्षा दी जाती है बच्चों की। बच्चे धूप का एन्जॉय कर रहे हैं बाहर निकल करके तमाम गाड़ी वाडी खड़ी हैं।

ये सारे बातें वहाँ समझी जाती हैं बैठ करके गेस्ट का मीटिंग होम्स सायद है ये।